पर पैलेस है और पैलेस में यहां पर व दो तीन सोफे से पडे हैं।

अतिनक सफेद कलर का और यहां पर बहुत अच्छा लाइट ते सज रहा और फूलों दा सज रहा और यहां पर --

ये जो है और यहां पर--

यहां पर एक मशीन सी रखी है और लीले से कलर की मशीन सी और एक बराबर में एक बोर्ड लग रहा है।

एक आदमी खड़ा हुआ टी शर्ट सी पहन रखी है उन्होंने--

और बहुत अच्छा पेंटिंग से बनया बरबर में और यहां पर--

बच्चों को पढ़ाने का आंगनवाड़ी--

और यहां पर बहुत सारे बच्चे है।

यहां पर बहुत अच्छे अच्छे समान है यहां पर।

यहां पर एक कूड़ादान सा है और कूड़ादन सा में यहां पर--

जे_सी_बी यहां पे एक बरबर में एक ट्रक है।

थोड़ा सा और यहां पर पेड़ पौधे हैं बरब्बर में--

चेयर यहां पर कुर्सी तीन कुर्सी सी पड़ी है और--

यहां पर ना नदी सी है और यहां पर पानी सा आ रहा है और--

दुकान है और दुकान में चॉकलेट सी है।

अच्छे अच्छे कुरकुरे है टांगने बरबर में और नमकीन धरी है यहां पर--

यहां पर एक रेस्टोरेंट सा है और उसमें भीतर बना रहा है एक आदमी और शीशा सा लग रहा है।

और यहां पर एक बराबर में एक सी रखी है और यहां पर दो प्लेट से प्लेट है और चमचे रखें--

और यहां पर लाइट लग रही है और यहां पर सोफे पड़े हैं सामने ही और यहां पर आदमी--

और बराबर में डी_जे से धरा है और उन पर लाइट लग रही है।

दीवाल से हो रही है और यहां पर--

एक गली सी जा रही है बराबर यहां पर--

यहां पर एक परचून की दुकान है और परचून की दुकान में अपर शैंपू से रखें--

लाइट सी लग रही है बाहर एक बोर्ड सा लग रहा है।

और बड़ी सी छपरी है बराब्बर में एक बोर्ड और यहां पर बहुत अच्छा--

निकल लिया पानी की ओर यहां पर दो किश्ती सी हैं।

ऊपर झोपड़ी सी बना रखी है और यहां पर पेड़ पौधे हैं।

और यहां पर बहुत समान और भी रखा हो--

और दुकान के ऊपर टिन गिर रही है।

और यहां पर बरबर में दो बोर्ड्स रखे है और एक बरबर में पोस्टर सा लग रहा --

और यहां पर बहुत बड़ा यहां पर है इनका बराबर में।

गेट पर कलर सा हो रहा है घर सा बना है।

और एक आदमी खड़ा है और उसका हाथ में प्लास्टर चढ़ रहा है।

यहां पर एक मंदिर सा है और यहां पर बहुत अच्छा सज रहा है और तीन गेट से हैं।

एक आदमी खड़ा है काले से कपड़े पेहन रखे हैं और यहां पर--

से है यहां पर एक गेट सा है और यहां पर--

यहां पर एक बिल्डिंग सी है और काले कलर के सीसे लग रहे हैं और--

यहां पर बहुत बड़ा जंगल है और वन से खडे है और--

यहां पर पेड़ पौधे हैं।

आदमी से लाइन सी लगी है और यहां पर पीछे लाल कलर का पिट्ठु बैग बांध रहा--

आगे दो लीली सी टि शर्ट पहेरी--

और यहां पर दो नाव है।

और यहां पर दो तीन--

र यहां पर बहुत अच्छा और यहां पर अधि सी नदी सूख रही है।

यहां पर लोहे की वो चद्दर सी बनी है। उस पर वेल्डिंग है और एक आदमी वेल्डिंग कर रहा मशीन सीते।

नीचे पटडीसी है और बसों का यहां पर झोपड़ी सी बनी है।